उसके ऊपर एक सीसे के ऊपर उसका डिश वाला रखा हुआ है। निचे दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। ये घर बहुत सुन्दर है।

यह भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है जिसके अंदर राधे कृष्ण का मूर्ति लगा हुआ है। मूर्ति के ऊपर कई तरह के फ्लावर्स चढ़े हुए हैं।